ये एक मोर है जहांँ पर बहोत सारे अ-अ-पत्थर पड़े हुए हैं मोर ने अपने पंख फैलाए हुए अ-अ ये बहोत प्यारा दिख रहा है उसके ऊपर एक पाइप भी लगा हुआ है।

और ये सब जीन्स पहने हुए हैं बहोत बड़े -बड़े सारे पेड़ दिख रहे हैं हरे हरे और जरा पत्ते और बहुत बड़े बड़े--

ये एक घर बन रहा है जहाँ पर बहौत सारी लकड़िया लगी हुई हैं और एक लड़का है जो की अंदर मजदुर काम कर रहा है उसके पीछे बहौत सारे घर पक्के नजर आ रहे हैं यहाँ ये सब घर व्हाइट कलर

ये एक फर्नीचर की शॉप है जहाँ पर फर्नीचर रखा हुआ है एक सोफे का सेट है पूरा जिस में--

पूरा हॉल है जिसमे बहोत सारे लोग दिख रहे हैं पीछे और आगे साइड मे बहोत सारे कुर्सियां रखी हैं और उससे आगे बहोत सारे --

एक ग्लोसेरी शॉप है जहा पर भोत सारा सामान रखा हुआ है यहा पर भोत सारी टेल की शीशिया रखी हुई है पीनट बटर रखे --

ब्लू कलर की पहने हुए --

और कुछ में गुच्छे भरे हुए रखे हुए हैं रेड कलर के दिखाई है साइड में और भी एक पेपर --